खिड़की पर ग्रे कलर का पर्दा टँगा के है।

बिल्डिंग में बड़ा बड़ा आईना लगाके है।

नीचे में एयरटेल का पोस्ट लगाके है।

ये में बहुत सारे इंसान है येलो कलर का हेलमेट पहन के हैं।

चेस बोर्ड भी लगा के रखा है।

ऊपर मे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है साइट पे टीना से बनाकर एक बिल्डिंग है।

नीचे में दो इंसान खड़ा होके है।

ऊपर में दो ठो लाइट बल्ब है ऊपर में इंग्लिश से कुछ लिखा हुआ है।

येलो कलर का एक डस्टबिन है।

छोटा छोटा पत्थर भी है।

एह पिक्चर में बहुत सारा रो का मछली है बहुत सारा सूखा मछली भी है।

व्हाइट कलर का एक प्लास्टिक भी रखा है।

फ्लेट का बाक्स भी है।

रसगुल्ला का डब्बा भी है।

बहुत सारा भी रखा है।

बिस्तर का ऊपर में पिलो भी रखा है बेडशीट भी बिछा के है।

दीवार में ब्लू कलर का लाइट जल के है।

एक बड़ा सा पेड़ भी लगा के है।

एक बल्ब भी लगा के रखा है।

इसमें बहुत सारा इंसान खरा हो के है।

एह पिक्चर में बड़ा सा एक ग्राउंद है छोता सा एक गद्दा भी है।

छत पे बड़ा बड़ा पेड़ भी लगा के हैं।

बड़ा सा एक एयरटेल पोस्ट भी है।

पेड़ का टुकड़ा जैसा भी है।

एह पिक्चर में दो दो ठो बस है और एक ऑटो रिक्शा है और दो ठो इंसान निकल के है।

ये पिक्चर में एक खराब वाला कार है और एक इंसान काम करके है।

बीचे में एक इंसान बैठ के है।

पीछे में एक बड़ा सा एक फ्रिज है अंदर में बहुत सारा जूस रखा हुआ है।

घर भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बंबू भी टँगा के हैं।

ए पिक्चर में दो इंसान काम करके है वाइट कलर का दो ठो बाकेट है।

एक सी_सी_टी_वी भी लगा के है बड़ा सा एक स्विच बोक है।

दु ठो कुर्सी भी है खिड़की भी खुला है।

दामूल का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

दो इंसान चल के है ऊपर में इंग्लिश से कुछ लिखा हुआ है।

दीवार में एक फ्रेम भी लगा के रखा है।

ब्लैक कलर का दो ठो चेयर भी है।

ऊपर में ब्लू कलर का टिना है।

बड़ा पहाड़ भी है और और एक वायर पोस भी है।

बड़ा बड़ा पेड़ भी लगा के है।

कुछ सारा इंसान फुटबॉल खेल के है।

वहां एक स्विच बोर्ड भी लगा के है।

पानी बोतल भी है लाइट ऑन करके भी रखा है।

दो फ्रिज हैं एक इंसान चेयर में बैठ के हैं।